व्हाइट कलर कि हर व्हाइट कलर का गोल गुमटा दिखाई दे रहा हैं सामने कि ओर--

सारी साइकिल वाइकिल खड़ी हुई दिखाई दे रही जो एक लाल के साथ साइकिले खड़ी --

एक बज बजरी का ढेर लगा हुआ दिखाई दे रहा है सामने दो पुलिस वाले खड़े दिखाई घूमता दिखाई दे सामने--

कई सारी चीजें सामने की ओर रखी हुई दिखाई दे सामने की ओर दिखाई दे रही हैं।

ऊपर के तरफ तो सारे झूमर उमर सब लगाये गए है।